यह आदमी ने हैंड ग्लव्स पहने गए है। हैंड ग्लव्स सफेद कलर पर दिख रहे हैं।

आजू-बाजू में बहुत सारे अ पेड़ दिख रहे हैं।

यह एक कम कलाम ए कलाम हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर मुनिस आदिल है।

और डॉक्टर अजीम अकबर में है जिन्होंने एमबीबीएस एमआईएपी किया गया है वो एक जनरल फिजिशियन है।

जिसके बोर्ड पर एक नंबर भी दिया गया है। चतुर्वेदी बेकर्स के ऊपर ही --

यह एक मार्केट प्लेस दिख रही है।

चार स्पीकर दिख रहे हैं हैलोजन बल्ब दिख रहा है।

य एक मछली की दुकान दिख रही है जहां पर बहोत सारे औरतें मछली बेच रही है।

यह एक स स्पोर्ट शॉप की इक्विपमेंट की दुकान है जिस पर बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के --

बहुत सारा अलग-अलग प्रकार के बेडमिंटन के रेग दिख रहे है।

और गुलाबी कलर का समावेश दिख रहा है।

यह एक टी.टी. डिजायर का प्रीमियम इनर वैर संजीव रेडीमेड एण्ड जनरल स्टोर है।

जिस पर संजीव रेडीमेड गारमेंट्स एण्ड बैग सेंटर रजपूत --

ब्यूटी फाइन म मास्क भी दिख रहा है आजू-बाजू में --

मौसम बहुत ही सुंदर दिख रहा है आजू-बाजू में हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही हैं।

आजू-बाजू में कुंडी में बहोत सारे पौधे लगाए गए है।

यह कुछ औरतें यहाँ पर नाच रही है जैसे कि जिसने पंख लगाए गए हैं।

यह एक समुन्दर का नज़ारा दिख रहा है छोटी-छोटी लहरें इसमें आ रही है आजु बाजु में हरियाली दिख रही है पेड़ दिख रहे है।

बोहोत सारे गाड़ियां दिख रही हैं मोटरसाइकिलें दिख रही हैं ऑटोरिक्शा दिख रही हैं।

और कांटेक्ट नंबर के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिस पर होटल सिवान ऐसा करके दिख रहा है।

पानी की बोतले रखी हुई है आजू- बाजू में एक दो शॉप भी दिखाई दे रहा है।

जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं बहुत लंबे-लंबे पेड़ यहां पर दिख रहे हैं।

पर रूम में एक-एक ऐसी का यूनियन दिख रहा है।

और आगे फूलों के फलों के पेड़ भी दिख रहे हैं।

पीछे सु अ विद्यार्थी लोग खड़े हैं। प उसके पीछे अ यीशु क्रिस्ट का --

आजु-बाजू में पेड़ दिख रहे हैं मोबाइल का टावर दिख रहा है लाइटिंग --